रखे हुए हैं। मॉल में कोई भी नजर नहीं आ रहा है।

दुकान में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ब्राउन कलर का एक काउंटर बड़ा-बड़ा सा रखा हुआ है।

एक जीम है | जीम में तीन बॉडीबिल्डर्स टाइप लड़के खड़े हुए हैं।

सामने एक बूढ़े से आदमी सफ़ेद कलर का कुर्ता पेहेने खड़े हुए हैं।

एक पुराना सा घर है।

गार्डन के अगल-बगल आने-जाने का रास्ता भी बोहोत अच्छा है।

मैदान में हरा-हरा सा पेड़ निकला हुआ है।

ऊपर टीन की शेड्स डाली हुई है।

माकन बोहोत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है।

एक हाथ नजर आ रहा है।

एक लड़की पीले कलर का सूट पेहेन कर साइड में खड़ी हुई है।

मछली के आस-पास मछली के कटे हुए टुकड़े भी नजर आ रहे हैं।

पीछे एक मेरून कलर बोहोत ही खूबसूरत सी फ्रिज रखी है।

एरिया में एक कैमरा मैन जैसा लड़का खड़ा हुआ है।

स्कूल मे बोहोत सारे बच्चे बोहोत सारे टीचर्स --

एक टेबल रखी हुई है | टेबल के ऊपर तीन चार बड़ी बड़ी फाइल्स रखी हुई है | उपर बहुत --

''एक स्कूल है | स्कूल में एक मैम नीर नर्स के ड्रेस में --''

जगहे की बोहोत ही हिस्ट्रिकल टाइप की नजर आ रही है।